ये एक मार्केट एरिया जैसा दिख रहा है।

यहां एक स्विफ्ट डिजायर खड़ी है।

हां रेस्ट रूम जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे फूलों से सजाया गया है।

ये एक बहोत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है।

इधर पेड़ भी लगाया गया है।

यहाँ कुर्सीए लगे हुए हैं यहाँ स्पीकर्स दिखाइ दे रहा है।

यहां दो तीन लैंप लगा हुआ है।

यहां फूलों की थाली रखा गया है यहां दो आदमी खड़े है।

ये एक किसी का घर लग रहा है।

यहां तीन छोटे छोटे सजाने वाले घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुत्तों का खाने वाला चीज दिखाई दे रहा है। देख के लगता है यह पेट का दुकान है।

ये एक अह नदी के किनारे का दृश्य है।

यहां ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे बलूंस लगाए गए हैं।

यहां लड़कियां डांस कर रही हैं।

यहां बीच में बैठने के लिए जगह दिया हुआ है।

यहां पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे बलूंस लगाए गए हैं।

यहां ओमाचा करके पोस्टर लगाया गया है।

चर्च में क्रिश्चियन का सिंबल दिखाई दे रहा है।

यहां एक मिरर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक शोरूम जैसा दिख रहा है।

ये रात का दृश्य लग रहा है।

आदमी आर्मी का कि अ पैंट पहने हुए है।